एक कमरे का हॉल है इस हॉल में कुछ औरतें और बच्चियाँ योगा कर रही है।

यह किसी बड़े से मकान के सामने की तस्वीर है इसमे एक छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहा है।

उसके बगल में किसी ट्रेनिंग सेंटर की बोर्ड लगी हुई है ।

यह किसी तालाब की तस्वीर है जिसमे बहोत सारे नाव दिखाई दे रहा हैं उस नाव मे कुछ बच्चे बेठे हुए हैं।

जिसमें कुछ नाव दिखाई दे रहा है और इसमें एक व्यक्ति और एक औरत नाव की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक लड़का जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमे एक मशीन के ठीक सामने कोई व्यक्ति काम कर रहा है ।

यहाँ एक बाल काटने वाले सैलून की तस्वीर है।

जिसमे कांच के दरवाजे लगे हुए है।